यहाँ बहुत सारी नाव खड़ी हैं उनका कलर कुछ पीला है कुछ नारंगी है कुछ लाल है कुछ हरा सफ़ेद है नीचे काफी सारा पानी है जो कि बड़ा तालाब नज़र आ रहा है और आस-पास कुछ मिट्टी वैगरह भी है सामने की तरफ कुछ पेड़ वैगरह नज़र आ रहे है।

दुकान है जिसमे काफी सारी चीज़े रखी हुई है कुछ मैगी के पैकेट है कुछ मसालों वगेरा के पैकेट रखे हुए हैं और एक तार लटका हुआ है।

कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं नीचे की जो मिट्टी है मिट्टी के सामने की तरफ एक घर बना हुआ है जो कि उसमे गेट लगा है लोहे का और सामने की तरफ काफ़ी बड़े-बड़े पेड़ हैं।

ओ सामने के तरफ काफी बड़े-बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं और सामने एक दीवार भी खींची हुई है।

यहाँ सामने एक बड़ा पेड़ नज़र आ रहा है जो की तिरछा है उसमे काफी सारे पत्ते वगेरह दिख रहे है और यहाँ पर इसी तरीके से काफी सारे पेड़ वगेरह लगे हुए है ओ सामने के तरफ आसमान हैं जो की कुछ पी सफेद रंग का दिख रहा है।